मुझे इस चित्र में पोधै दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस चित्र में कार दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में डोर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में पानी की केन दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में चेयर नजर आ रही है।

मुझे इस पिक्चर में बाइक्स दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में लाइट्स दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक बॉटल दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में कार डेकोरेट करी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक शॉप दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में चेयर्स दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में विंडो दिखाई दे रही है मुझे इस पिक्चर में मिरर दिखाई दे रहे है।

जिस पिक्चर में नो स्मोक स्मोकिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा है। मुझे इस पिक्चर में रोड दिखाई दे रही--